गेट के बाहर जे_एस_सी_ए लिखा हुआ है।

एक किराने की दुकान है जिसमें बहोत सारे सामाने टंगी हुई हैं।

स्कूल के ठीक सामने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं।

बजाज सर्विस सेंटर की ठीक आगे एक तार टंगी हुई है।

पीछे इर एक पेड़ दिखाई दे रही है।

यहां एक ग्रीन कलर की डसबिन रखी हुई है।

पीछे दो आदमी बैठे हुए ईश्वर की इबादत कर रहे हैं।

इसके ठीक ऊपर बहोत सारे कप है।

कांच से बनी हुई खिड़की दिखाई दे रही है।